आस-पास वर्क आउट करने के लिए बेनचेस भी लगी हुई है तथा डंबल्स भी पड़े हुए हैं।

यह एक रंगोली है जो कि काफी ही सुंदर दिखाई दे रही है। इसके बीच मे ॐ लिखा है तथा --

शर्ट काफी रुझी हुई दिखाई दिखाई दे रही है। शर्ट काफी प्यारी भी लग रही है। शर्ट एक दीवाल के ऊपर टंगी हुई है दीवाल पे हरे रंग का कार --

यह नजारा एक सिटी काम्प्लेक्स का है जहां पे बहुत ही बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं जिसके कारण सिटी काम्प्लेक्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है।

और इसमें ऐ.सी तथा लाइटिंग भी लगी हुई है। इस जिम में कैमरे तथा साउंड भी हैं। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट नहीं --